यह एक चर्च है इसमें बहोत सी लेडिस बैठी हुई है।

इसमें प्लास्टिक की छोटी छोटी पेटियां रखी हुई हैं और उन पर फल रखे हुए हैं जैसे अनार सेब केला संतरा खजूर अंगूर रखे हुए हैं और कुछ डब्बों में पैक है।

और एक दीवार पर हरी भरी बेल लगी हुई है।

एक पेड़ खड़ा हुआ है जिसके पीछे बिल्डिंग है इसमें बिल्डिंग में सीसे लगे हुए हैं।

एक ब्लैक कलर का डी_जे रखा हुआ है और इसमें गेट लगा हुआ है।

और यहां पर जेंट्स और लेडीज खड़े हुए हैं।

और इसमें शीशे लगे हुए हैं एक लोहे के छोटे छोटे खंभे धरे हुए हैं।

यह एक अग्रवाल काइंडरेटन रूम है यहां पर एक गेट लगा हुआ है।

इसमें कुछ अंग्रेजी सीट मिलती है कुछ हिंदी सीट और कुछ टंकियां भी मिलती है।

और उसके ऊपर एक दीवार है दीवार पे कलर हो रहा है।

झोपड़ी है जिस पर गेट लगा हुआ है।

और इनके पास में एक स्कूटी है। इनके पास में एक गमला धरा हुआ है।

इसमें लोहे के स्टैंड बने हैं जिन पर गाड़ी खड़ी हुई है।

उनके पास में झोपड़ियां है कुछ बंदर है।